अंदर एक रूम का दरवाजा दिखाई दे रहा है जो खुला है बीच में सड़क निकल रही है सड़क के ऊपर गाड़ियां है।

सामने दुकाने लगी हुई है। दुकानों के दुकानों के पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

हां यहां नीचे दरवाजे लगे हुएं हैं खिड़कियां लगी हुईं हैं।

बीच में एक पलंग पड़ा है बेडशीट बिछी हुई है तकिए पड़े सफेद कलर के--